यहां पर बहुत सारे सामान रखे गए हैं जो कि आटा है।

कम से कम सात आठ ए_सी है और यह मकान उजले रंग का है ये रोड पे से फोटो लिया--

दुकान में बहोत सारे फल हैं केला सेब नारंगी।

सब लाल और काले रंग का पीछे एक बहोत बड़ा पर्दा लगाया गया है जोकि उजले रंग का है।

आ फोटो लग रहा है जहाँ पर तीन-चार आदमी खड़े हैं यहाँ पे कचौड़ी रखा हुआ है और बहुत सारा प्लेट भी है।

यह एक आनंद बिहार का फोटो है जो की डिस्टिक ऑफिस है।

-- मेन भी रखा हुआ है यहां पर अलग-अलग तरह के स्पीकर--